इस चित्र के माध्यम से हमें पता चल रहा है की यह एक खुबसूरत सा बागीचा हैं।

अ बागीचे के ऊपर टी टा वगैरह बाँध कर ऊपर पुरे गुलदस्ते लटकाए हुए हैं और नीचे पूरा जाल बना रहे हैं ताकि लोग इसे समझ सके।